यह एक ट्रैक्टर का शोरूम है जिसमें दो ट्रैक्टर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं स्टेरिंग दिखाई पड़ रही है साइलेंसर दिखाई पड़ रहा हैं बहुत सारे टायर लगे हुए हैं।

और पास में मोटरसाइकिले खड़ी हुई हैं तीन ब्लू कलर के शटर लगे हुए हैं।

यहां पे दो नावे खड़ी और एक नाव उल्टी दिखाई पड़ रही है एक नाव पे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने रेड कलर की चेक वाली शर्ट पहन रखी है।

बड़े-बड़े पत्थर दिखाइ पड़ रहे हैं छोटे-छोटे पत्थर दिखाइ पड़ रहे हैं।

दो आदमी दिखाई पड़ रहे हैं और एक आदमी ने अपने सेअ कंधे पे बैग टांग रखी है ब्लैक कलर की।